चारो बगल ह अथी गाछ छै छोटका-छोटका हरका वला बोगला क हाथ लअ -ल ओरेंज छे पीला छे।

हार अथी ताजा-ताजा कोभी छे अने लगल हरा वाला |